एक रोड लग रहा है| यहाँ पर चार से पाछ बिल्डिंग लग रही है| यहाँ पर एक भाई साइकिल से जा रहा है एक लेडिज यहाँ पर पैदल जा रही है| यहाँ पर तीन-चार बाइक खड़ी हुई है जो बाइक वगेरा लग रहा है जो बाइक यहाँ पर धुलाई भी कर रही है ।

यह एक भीड़-भाड़ वाली जगह है यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ हैं जिसमें मोदी का फोटो कमल पटेल का फोटो लगा हुआ हैं जो व्हाइट कलर मे इसमें गोपालगंज लिखा हुआ है।

एक खेत है। यहाँ पर र रखी है। यहाँ पर एक झूला टाइप बना हुआ है।

यह एक टावर है इस के आगे एक ग्राउन्ड साफ पड़ा है और इस के पीछे बिल्डिंग मे और इस के साइड मे खंबा है लाइट का और इस मे डि_पी भी रखी हुई है।

ये एक सेर-सपाटे वाला सन्नाटे वाला रोड है।

ओय पर कुछ रेड कलर में ओर्डिंग लिखी हुई है यहाँ पर व्हाइट कलर में और ब्लैक कलर में भी कुछ वॉर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं और कुछ आदमी यहाँ पर खड़े हुए हैं कुछ --